कुछ घर बने हुए हैं जोकी छत नहीं पड़ी हुई है इसके अलावा लोहे के पोल लगे हुए हैं।

कुछ टायर रखे हुए दिख रहे हैं एक लड़का जिम इक्विपमेंट पहन के टहल रहा--

जो दूसरे पोल से व्यवस्थित है और उस पर ट्रांसफार्मर और तार लगी हुई है।

नदी में कुछ लोग खड़े हैं और उस पे आकृति बनी हुई है।

पार्क में पानी भरा हुआ है जो कि पूरा साफ दिख रहा है और बच्चे लोग इसमें नहा रहे हैं।

अंग्रेजों के जमाने की कोई बिल्डिंग दिख रही है जो की बहोत प्राकृतिक स्थल की लग रही--

कुछ लोग मछली बेचते हुए नजर आ रहे हैं एक व्यक्ति मछली काट रहा है।

कुछ लोग खड़े हुए हैं और कुछ व्यक्ति जा रहे है। सामने कुछ घर बने हुए हैं जिन पर झंडे लगे हुए हैं।

जिनमें रोशनी बहोत तेज है कुछ कुर्सियां और मेज लगे हुए दिख रहे हैं।

साइकिल खड़ी हुई है एक बोरी नीचे पड़ी हुई है।

इसके अलावा एक सीढ़ी चढ़ने के लिए बई बनी हुई है।